इस इमेज में एक बंगला दिखाई दे रहा है नीचे गेट के बाहर बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहां पर इमारत दिखाई दे रही है और नीचे दो लोग चलते नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में हाॅल दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक स्टैचू दिखाई दे रहा है उसके पास में लड़की खड़ी नजर आ रही है।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

इस इमेज में रोड दिखाई दे रही है और यहां पर कार चलती नजर आ रही है।

एक इमेज में यहां पर फैक्ट्री दिखाई दे रही है ये लड़का टोपी लगाकर काम कर रहा है।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

इस इमेज में एक स्टेज दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लेडीजें लड़की को प्राइस देते दिख रही है।

इस इमेज मे यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर मीटिंग चलती हुई नज़र आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और कुछ बच्चे ड्राइंग करते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक कार दिखाई दे रही है और ये व्यक्ति कलर करता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है यहां पर जुलूस निकलता नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने अल्बर्ट हॉल दिखाई दे रहा है और लाइटें भी जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में टेबल पर बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी है साइड में दरवाजा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में हॉल दिखाई दे रहा है और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में ऑफिस दिखाई दे रहा है सामने देखो दीवाल पर टी_वी भी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने गेट दिखाई दे रहा है और नीचे एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है।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

इस इमेज में कुछ स्टॉल दिखाई दे रही है सामने दो व्यक्ति भी खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में एक गेट दिखाई दे रहा है और पेड़ के नीचे बाइक भी खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर नदी दिखाई दे रही है और एक व्यक्ति पत्थर पर बैठा नजर आ रहा है।

इस इमेज में स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और कुछ बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है और पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में शादी का गेट दिखाई दे रहा है और दो कपल भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और सामने कुछ घर भी नजर आ रहे हैं।